यहां पर एक ए_सी लगा हुआ है दीवार पे और कई सारे यहां पे फ्रिज नजर आ रहे है जो की पैनासोनिक के हैं।

और पेंट हो रखा है व्हाइट और ऑरेंज कलर का

एक ओर दो दुकानें और हैं वो भीं बंद हैं।

जो सफेद अ नीली रंग की शर्ट है काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

जोकि स ये स्टील का गेट है पीछे एक आदमी खड़ा है नीले रंग की शर्ट पहेन कर--

इस फोटो में सामने लिखा है शिव हनुमान मंदिर एक तरफ शिवजी की तस्वीर लगी हुई है तो दूसरी तरफ हनुमान जी की तस्वीर भी लगी हुई है।

कई सारी सीढ़ियां है यहां पर काफी सारे लोग हैं।

इस फोटो में एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहे हैं लड़की के हाथ में घड़ी है।

इस फोटो में जो है बाहर का नजारा दिखाई दे रहा है।

और सब बच्चों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

एक दो ने ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

लाइट जल रही है थोड़े बहोत पेड़ नज़र आ रहे हैं एक येलो कलर का तिरंगा नज़र आ रहा है।

सामने एक स्टूल रखा हुआ है जो चॉकलेट कलर का है।

यहां पर सोफे नज़र आ रहे हैं जो कि लाल रंग के हैं सोफे के ऊपर एक न्यूजपेपर भी पड़ा हुआ है।

और नीचे ग्रास वाला जो है कारपेट बिछाया हुआ है एक बैग नजर आ रहा है दो स्विच बोर्ड नजर आ रहे हैं।

एक ऑटो भी खड़ी है एक दुकान है।